जिसके ऊपर हमें बहुत सारी अलग अलग रंगों और अलग अलग--

एक ऑटो रिक्शा के पास में हमें बहोत सारे लोग खड़े हुए नजर आ रहें हैं।

उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ हैं।

जिसके ऊपर माइक्रोमैक्स केयर लिखा हुआ है।

टेबल्स पड़ी हुए नजर आ रहे है।

इसकी एंट्री गेट पर बहोत सुंदर--

इस दृश्य में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर गोल गोल आकार की--

यह दृश्य हमें किसी सैलून का दिखाया जा रहा है।

जिसके ऊपर हमें न्यू ताज हेयर सैलून और उन साथ में उनका कांटेक्ट नंबर भी मेंशंन किया गया है।

कार के सामने हमें बहुत सारे नए टायर्स पड़ी हुई दिख रहे हैं।

जिसके साथ में हमें कुछ गुब्बारे भी दिख रहे हैं।

यह एक सरकारी स्कूल है एक दीवार पर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल क्विक हेयर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें एक कमरा दिख रहा है।

पीछे हमें कुछ वृक्ष भी दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हमें एक कमरा दिख रहा है।

इस यह दृश्य हमें एक रूम का दिखाया जा रहा है।